और ये बहुत फर्स्ट क्लास का है। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं एक्सरसाइज करते हैं।

ऊपर एक और ऑफिस है। दैनिक भास्कर का भी है। ऐसे संजय कंसल्टेंसी भी है। टाटा ऐ.आई.जी. कोम भी है।

ये बहुत बढ़िया बिल्डिंग है। इसका बहुत अभी नया बना है। इसका केले का पेड़ है। बहुत अच्छा पेंटिंग डेंटिंग किया गया है।